गंगा महल घाट हउवे दीवाल पर लिखल हउवे कशी विश्वनाथ आदमी सब घुमत हउवन।

गेट बनल ह गेट के ऊपर पोस्टर लगल ह अपर श्रम आयुक्त उत्तर प्रदेश का वाराणसी क्षेत्र वा --

एक बड़ी दीवार हुव दीवार में लाइट घर बनल है | पीछे दीवाल दिखत है लाइट वाइट लगा हुव ।